सामने रेत पड़ी है गिट्टी पड़ी है पाइप पड़ा हुआ है ओ काफी सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं।

एक फैन लगा है और एक भईया बाहर जा रहे हैं। सामने खाने का स्टॉल लगा--

ये पोस्ट ऑफिस के बाहर का है यहां पर ये लोग अपना पोस्ट लेने या पार्सल लेने के लिए आए जाते है यहां पर दो अ लोग खड़े हैं बच्चा खड़ा है।

यहां पर डॉक्टर यहां पर ये भैया मशीन से मालिश कर रहे है उनकी कमर मे दर्द है इसलिए।

ये बस स्टैन्ड का फोटो हैं यहाँ पर कन्डक्टर चश्मा लगाकर बाहर खड़े हुए हैं।